इस दृश्य हमे एक बडी सी बिल्डिंग का दृश्य बताया गया है। जहा पे नीचे बहुत सी दुकाने हैं। वहा--

इसके ऊपर लोगोन चल रहै है उस पहाड़ के आसपास बहुत सारी हरियाली है तथा बहुत सारे पेड़ लगे हुए है उस पेड़ के आसपास सुकी घास है जो हरी भरी है तथा बहुत अच्छी लग रही --

इस दृष्य मे हमे एक कमरा दिखाई दे रहा है जो वूडन प्लाई से बना हुआ-- उस वूडन प्लाई के कमरे मे एक कम्प्युटर रखा गया है।

तथा दर दुकान के अंदर बहुत सारी म्यूज़िकल इन्स्ट्रुमेंट रखे हुए जैसे ड्रम गिटार आदि।